उन्हीं के सामने साइड में एकदम एक कस्टमर है अपने कस्टमर से बातूत कर रहे हैं।

जिसमे की पांच व्यक्ति हैं जोकि अच्छे से खूब--

और साइड में एक साइकिल है आगे की तरफ एक बाइक है।

और घर के अगल बगल पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

और देख रहे हैं हमारे सामने एक बहुत बड़ा किराना स्टोर है।

विद्यार्थी जो है अपना स्लीपर बाहर रख के अंदर शायद गए है पढ़ाई करने के लिए।